साइड में रेड कलर की फूल भी दिखाई दे रही है बीच में थोड़ा सा रास्ता भी दिखाई दे रहा है।

कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है जो फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे है।

आगे की और कुछ खली जगह भी दिख रही है।

तथा कुछ बच्चो के बैग भी दिखाई दे रहे है।

मैदान के साइड में कुछ पेड़-पौधे दिख रहे है।

हमे बहुत सारे कंगारू की पिक दिखाई दे रही है जो एक--

पेन पेंसिल इरेज़र शापनर --